इस फोटो में एक लड़का बैठा हुआ है जिसने हाथ और पैर दोनो में जूते पहने हुए हैं ए --

खंभे पर एक लाइट लगा हुआ है ऊपर बिजली के कुछ वायरें दिखाई दे रहीं हैं ऊपर खुला आसमान है।

इस फोटो में नदी दिखाई दे रही है जिसके पास एक पुल बना हुआ है आस-पास कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है जिस पर एक पुल बना हुआ है जहाँ से वाहन जा रहे हैं दूर कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर खुला आसमान है।